एक अंकल बैठा हुआ है जिन्होंने चेक कलर की शर्ट पहनी हुई है।

सामने दो घर है एक गाड़ी है छोटा हा ।

ये एक एस_बी_आई ऑफिस है।

ग्रे कलर का पेड़ लगा हुआ है।

पोट्रेट है एक नीचे एक स्ट्रा भी है।

ड्रेस है जो ब्लू कलर का है फैन है ऊपर और ऊपर लाइट भी लगे हुए हैं।

उन्होंने जूड़ा बना बन बनाके क्लिप्स लगाए हुए हैं क्लिप का कलर ऑरेंज है।

जिम में एक लड़का है जो जिम में अपना बॉडी दिख रहा है।

ये एक होटल है और यहां पे टेबल्स लगे हुए हैं।

ये क्लोथ शॉप है। यहां पे बच्चों के कपड़े है फ्रॉक्स है स्कर्ट है।

ये एक रेड कलर का ड्रेस है।

ये एक मैरिज पैलेस है और यहां पे बहोत अ तीन चार फोटो फ्रेम्स है।

ये एक फैक्ट्री है और ग्रीन कलर का ट्रकटर है।

एक एक्टिवा से इंसान आ रहा है दो इंसान बैठे हुए हैं उसे पर।

एक गार्डन शॉप है और यहां पर बहुत सारे प्लांट है।